ये कोई एक तलाब हैं इस तालाब के इधर साइड में सीढ़ियां लगी हुई हैं।

कार ही खड़ी हुई हैं जो की रिपेयरिंग के लिए आई हुई है कुछ व्यक्ति है जो की कार को तैयार कर रहे हैं।

और इस दुकान पे व्हाइट कलर का पेंट किया गया है ये टेबले कुर्सीयां लगी हुई है साइड में।

इस दुकान के अंदर ये पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पे कुछ शब्दों में लिखा गया है दुकान के अंदर कुछ सामान भी पड़ा दिखाई दे रहे हैं।